घर को डेकोरेट करने के लिए और ऊपर व्हाइट कलर की दीवार दिख रही है उसमें लाइट्स दिख रहीं हैं।

इ जो हेय ग्रोसरी की जो हेय शॉप हेय उसके अंदर जो हेय काफी सारे कप्स टंगे हुए हैं।